तो उस पे मरकरी लगी दिख रही है बड़ा सा बल्ब दिख रहा है ग्रीन जामुनी कलर दिख रहा है सब में नीले कलर भी दिख रहा है नीचे --

बॉक्स दिख रहा है ब्लैक कलर का ग्रीन कलर दिख रहा ब्लैक वाइट ग्रीन कलर की।

ईंटों का मकान दिख रहा है उसमें कलर दिख रहा है बहुत सारे बोर्ड लगे हुए दिख रहे हैं ऑटो का फोटो दिख रहा है साइकिल का फोटो दिख रहा है नीचे गाड़ियां खड़ी दिख रही हैं बहुत सारी के --

जाते हुए दिख रहे हैं। गाँड़ियों पे जेंट्स खड़े हुए दिख रहे हैं।

के खम्भा दिख रहा है वाइट कलर का दिख रहा है मकान दिख रहा है पीछे वाइट कलर का स्विच बोर्ड लगी हुई दिख रहा है ऑरेंज --

मशीने रखी हुई दिख रही हैं बॉडी बिल्डर बनाने वाली --

बल्ब लगा हुआ दिख रहा है। लाइट जलती हुए दिख रही है। रेड कलर की बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है। खम्बे वगेरा दिख रहे हैं बहोत सारे उसमें --

मंदिर दिख रहा है रेड वाइट कलर का बहोत सारे जेन्स बैठे हुए दिख रहे हैं। गाँड़ियाँ दिख रही हैं दुकाने लगे हुए दिख रही हैं झंडियाँ दिख रही हैं कलश लगा हुआ दिख रहा है गेट लगा हुआ दिख रहा है दो तीन --

एक मूर्ति दिख रही है कृष्ण भगवान की गोदी में दोनों हाथ दिख रहे हैं पीला कलर दिख रहा है मुकुट बंधा हुआ दिख रहा है।

कलर दिख रहा है वाइट कलर दिख रहा है। --

आज कल के लोग खड़े हुए दिख रहे है एक जेंट्स के हाथ में डंडी दिख रही है | मकान में उम् पेंसिल कलर की खिड़की दिख रही है | पेड़ दिख रहे हैं | ढोरी --

चीनी दिख रही है दुकान दिख रही है। चैनल गेट लगा हुआ दिख रहा है। रोड --

का मंदिर दिख रह है। इसमें रेड कलर पुता हुआ दिख रहा है। मूर्ति दिख रही है.दो तीन लड़कियां दिख रही हैं। मूर्ति के बगल में ब्लैक कलर का बैग दिख रहा उसका --

दिख रहा है दरी बिछी दिख रही है पिली-नीली --

कलर पिंक कलर ग्रीन कलर रेड कलर की बैलून दिख रहे हैं। कलर दिख रहा है। दिख रहा है। बॉल पड़ी हुई दिख रही है।

दिख रही है। एक लड़का दिख रहा है नाव पे।